दुकान है दुकान बंद है| दुकान का शटर लगा हुआ है| शटर का रंग नीला है| दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है वो नीले रंग का है।

दोनों बाजू में बहुत सारे पेड़ हैं| एक साइड में इमारते हैं इमारते बहुत ऊँची है उनका रकेत रंग सफेद है।

उसके ऊपर कुछ पोस्टर्स लगाए है| शॉप के उपर एक बोर्ड लगा हुआ है| बोर्ड का रंग सफ़ेद और लाल है।

बैठने के लिए बहोत बड़े सीट्स हे वो लाल रंग के हे| उसके ऊपर कुछ बच्चे बेठे हे।

नदी में बहोत सारे पत्थर बड़े-बड़े खड़क हे पीछे जंगल है| जंगल में डाट हरियाली हे बहोत सारे पेड़ हे पेड़ का रंग हरा हे।

देख रहे है यहाँ एक डेकोरेशन है| डेकोरेशन शायद स्टील का है कुछ ग्लासिस है उनका रंग चँदेरी हे।

बाजू में एक कूड़ेदान है कूड़ेदान का रंग हरा है।

रास्ते के बगल में छोटे-छोटे पौधे हैं बहुत सारे पेड़ हैं हरे रंग के हैं कंपाउंड हैं।

रास्ते में बहुत सारी भीड़ है कुछ घर है उनके दीवार उनके रंग नीले हैं अगल-बगल में बहुत सारे पेड़--

जैसा कि आप देख रहे हैं यह टूरिस्ट बस के अंदर का चित्र है।

यह एक कार्यालय की इमारत है| इमारत बहुत ऊंची है इमारत की दीवार का रंग सफेद है हरा है और लाल है।

इमारत का गेट लोहे का है| इमारत के प्रवेश द्वार में कुछ लोग खड़े हैं।

अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ हे| नदी के किनारों पे कुछ आदमी हे उनके हाथ में मछली हे| यह मछली की ट्रे हे जो पीले रंग के हे|